इस पलंग के ऊपर सफ़ेद और रेड रंग के बिछाए गए हैं और दो वाईट कलर के ब्लैंकेट है।

यहाँ पर कुछ महिलाओ के द्वारा और व्यक्ति के द्वारा पटाखे छोड़ रहे हैं। यहाँ --

यह एक दुकान है। इस दुकान में बहुत सारे आर्टिफिसियल समाने सजावटे की समाने मिलती है।

यह चार दिवारी से अँधेरा होगा। इस के बीच में एक पार्क है। जहाँ बच्चो को घुम घुमने के लिए बनाये गए है। । यहाँ बोहोत सामान है। और इसके अगल -बगल में बोहोत बड़ी बड़ी पेड़ है। ये पार्क बहुत ही सुंदर है। जहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं पड़ --

धीरे-धीरे रोड के ऊपर जा रही है और इसके ऊपर नीले आसमान से घिरा हुआ है।

झूलना है और शीश --

एक गेट है और उस गेट के ऊपर लिखा हुआ है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र।

और इधर रखने की जगह जैसा बना हुआ है जो लकड़ी का बना हुआ है और इसके ऊपर ठीक --

एक बालक उम्म पुरे बिना वस्त्र पहने नंगे --

दो एफिल टावर भी लगा हुआ है। इसके बाहर --